यहाँ पर एक स्टेज हेगा स्टेज पे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं और स्टेज के सामने काफी सारी खुर्सीया डली हुई हैं।

यहाँ पर एक घर बन रहा हेगा यहाँ पर कुछ मज़दूर हेंगे जो स्लैब डाल रहे हैं और चिकना कर रहे हैं उसको--

ये एक रेलवे स्टेशन हेगा यहाँ पर पटरी पटरियाँ बन रही हेंगी और यहाँ पर काफी सारे लोग है और अ-यहा पर दो थाली रखी हुई है जिसमे लड्डू रखे हुए है।

और अभी डैम के सारे गेट बंद हैं पानी निकलने के और पानी काफी साफ़ हैं यहाँ पर अभी सूरज निकला हुआ हैं जिसकी रौशनी पानी पर पड़ रही हैं तो पानी चमक--

और काफी बिल्डिंग्स बनी हुई है कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है कुछ बिल्डिंग्स छोटी है रोड के रोड में काफी भीड़ है लोगो की काफी वाहन है ये --

कुछ छोटे-छोटे घर है इसके जस्ट राइट साइड में एक गली है गी और यहाँ क कुछ पेड़-पौधे लगे हुए है गे--

यहाँ पर एक बहुत बड़ा- सा हाल है जहाँ पर दो टैक्सियाँ खड़ी हुई और यहाँ कुछ बाइक मोटरसाइकिल स्कूटी भी खड़ी हुई ।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ हैगा और स्टेज के ऊपर एक सोफ़ा रखा हुआ है सोफ़ा व्हाइट कलर का हैगा और स्टेज में काफी सारे--